इस चित्र मे हमे एक बड़ा सा एक वर्क शॉप नजर आ रहा है वर्क शॉप मे मतलब मानो की एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी नजर आ रही हैं लाइब्रेरी मे बहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

अ इस चित्र में हमें एक वर्कशॉप नज़र आ रहा है अ जहाँ पे एक कार अ_ अ रिपेयरिंग होती है और यहा ए पे हमें ए काफी सारे टूल्स मिशनरीज जमीन पर बिखरी हुई नज़र आ रही है।

हंडरेड परसेंट यहाँ पे पेट श्य श्योर पेट्रोल भरा जाता है यहाँ पे काफी सारी लाइटिंग लगी हुई है यहाँ पे पेट्रोल की दो मशीन दिखाई दे रही है।

हमें एक हमें दीवाल नजर आ रही है जोकि हरे कलर की है दीवाल के उस पार एक टीन से बना हुआ शेड है और दीवार को लग के ही एक तबेला है जो कि लकड़ी से बनाया हुआ है और वहाँ पे काफी सारे ए पशु जो है।